और निचे की जमीन काली है पीछे दिवाल में छपका - छपका है ऊपर फुल सजा हुआ है ।

लम्बाई सा बीच रोड है जो ब्लाक कलर का है जिसके साइक में वाइट कलर के कार है उसके साइक में ग्रिल है जो वाइ कलर का है तीन टाला इक बिल्डिंग है जो के वाइट कलर का है।

रेड और ग्रीन कलर का है इस दोनों साइड में बहुत सारे गछ लगे हुए है निचे में छोटे-छोटे वास में गछ लगे हुए है कुछ रेड कलर के है कुछ ग्रीन कलर के है दूसरे साइक में ब्लू कलर का --

निचे में रेड कलर का फोटो है उसके ऊपर एक मोबाईल का फोटो --

दो बाइक रखी हुई है सामने एक आदमी बैठा हुआ है ऊपर ब्लू कलर का बोर्ड है वाइट कलर का लिखा है साइड में दो लोग है एक ग्रीन कलर का गंजी पहना हुआ है उसी के साइड में एक और मकान है जो वाइट कलर का है।

बड़ा सा घर है जिसके नीचे ब्लू और येलो का कारपेट बिछे हुए है कुछ लोग आधे लेटे हुआ है जो वाइट कलर पहरा है कमर में येलो पट्टी--

साइड में एक बहुत बड़ा सा पोखर दिख रहा है उसके चारो साइड से ग्रीन कलर के पत्ते वाले बहुत सारे गच्छ है रोड के साइड में पक्के का दिवार --